छवि में एक केनरा बैंक का ए.टी.एम. दिखाया गया है बैंक के ऊपर एक बोर्ड पे नीले रंग के बोर्ड पे केनेरा बैंक हिंदी में भी लिखा गया है।

और मिरर बहत बड़े-बड़े लगाए हैं। मिरर के चारों तरफ बल्ब लगाए गए हैं ताकि अँधेरे में भी आप अपना शक्ल अच्छे से देख सकें।

और चालू अवस्था में है कोई लोग दिख नहीं रहे है।

साइड से देखने को तीन ऑटो रिक्शा दिख रहे हैं जिस के ऊपर जजा लिखा हुआ है।

छवि में एक सुंदर सा लॉन के अंदर को दिखाया गया है यहां पर सब लाल और गुलाबी रंग का है।

अलाहाबाद बैंक देखने को मिल रहा है जिसके नीचे ग्रीन रंग से रंगोली पे लिखा गया है वेलकम और लाल और ध-सफेद रंग से साइड पे डिजाइन बनी हुई है।